पर दाएं साइड में एक बड़ा सा पेड़ भी है।

ऊपर बहोत सारे तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के पास का इलाका एकदम सुनसान दिखाई दे रहा है।

ये एक ढाबा है जिसका नाम पंजाबी ढाबा है।

नीचे फर्श पे हरे रंग का मैट भी बिछा हुआ है।

यह कोई छोटा सा पार्क है।

यह जिसने वायलेट कलर की शर्ट पहनी हुई है जिसका बटन सफेद रंग का है।

हुआ है जिसके अंदर सोने का कुछ लटका हुआ है।

पीछे दो खिड़कियां है और एक ट्यूबलाइट लगी है बगल में।

यहां पे छोटे छोटे पोल भी लगे हुए हैं जिसके ऊपर लैंप लगा हुआ है।

यहां पे दाएं हाथ के साइड में एक ए_सी लगा हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे केक रखे हैं बगल में गमले में छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

जिम के अंदर पिलर है जिसकी रंग पीली है।

गमले में छोटे पे फूल भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की साइड बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

यह कोई टीला है जो की बहोत सारे पत्थरों से बना हुआ है।

यहां पे एक बड़ी सी दीवाल दिखाई दे रही है जो कि छोटे बड़े पत्थरों से मिल के बनी है।

यह कोई नृत्यक है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

ये एक छोटा सा फूड कोर्ट है जहां पे --

यहां पे बहोत सारे टेबल और मेज लगे हुए हैं खाना खाने के लिए।

जमीन पे हरे रंग की घास दिखाई दे रही है जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।